लिबर ऑफिस इंप्रेस में प्रस्तुति देखने पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम व्यू ऑप्शन्स और उनके उपयोग और मास्टर पेजेस के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में उबंटु लिनक्स वर्जन 1004 और लिबर ऑफिस वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
पहले अपनी प्रस्तुति सैंपल इम्प्रेस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं
लिबर ऑफिस इंप्रेस में कई व्यू ऑप्शन्स हैं जो आपको अच्छी प्रस्तुति बनाने में मदद करते हैं
डिफॉल्ट रूप से जब आप लिबर ऑफिस इंप्रेस शुरू करते हैं यह इस तरह दिखता है
इसे नॉर्मल व्यू कहा जाता है
जब प्रस्तुति किसी अन्य व्यू में होती है
आप नॉर्मल टैब पर क्लिक करके नॉर्मल व्यू में वापस आ सकते हैं
या व्यू और नॉर्मल पर क्लिक करके
नॉर्मल व्यू में आप स्लाइड्स बना सकते हैं और एडिट कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप हम स्लाइड्स की डिजाइन बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए ओवरव्यू नामक स्लाइड पर जाएँ
दाईं ओर पर टास्क पैन में मास्टर पेजेस सेक्शन यूज्ड इन थिस प्रेजेंटेशन के तहत हम स्लाइड डिजाइन देख सकते हैं जो है पीआर स्ट्रैटजी
इसके नीचे हम भी उपयोगित और उपयोग के लिए उपलब्ध स्लाइड डिजाइन्स देख सकते हैं
आपके पसंदीदा किसी एक पर क्लिक करें
वर्कस्पेस पैन में स्लाइड डिजाइन में बदलाव पर ध्यान दें
देखिए स्लाइड डिजाइन बदलने के लिए यह कैसे आसान है
आप डिजाइन्स भी जोड़ सकते हैं जिसे आपने अपने स्लाइड्स बैकग्राउंड के रूप में बनाया है
अगला हम आउटलाइन व्यू देखेंगे
आप इस व्यू पर जा सकते हैं या तो व्यू और आउटलाइन पर क्लिक करके
या आउटलाइन टैब पर क्लिक करके
इस व्यू में आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स कन्टेंट टेबल की तरह एक के नीचे एक व्यवस्थित हैं
ये यहाँ स्लाइड हैडिंग्स हैं
ध्यान दें कि स्लाइड हैडिंग का ओवरव्यू चिन्हांकित है
यह इसलिए क्योंकि हम ओवरव्यू स्लाइड पर थे जब हमने आउटलाइन टैब को चुना
आप देख सकते हैं कि इन आइकन्स का आकार बुलेट प्वॉइंट की तरह है
जब आप इन बुलेट प्वॉइंट्स के आस पास माउस रखते हैं कर्सर हैंड में बदल जाता है
हम फिर उनको स्लाइड में पुनः व्यवस्थित करने के लिए इन लाइन आइटम्स को अप या डाउन कर सकते हैं
या एक्रॉस लाइन
CTRL और ज़ को प्रेस करके इन बदलावों को अन्डू करें
ताकि हमारी प्रस्तुति इसके मूल फॉर्म में दिखाई दे
हम स्लाइड को पुनःव्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग करते हैं
हम व्यू और स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करके स्लाइड सॉर्टर व्यू पर जा सकते हैं
या स्लाइड सॉर्टर टैब पर क्लिक करके
यह व्यू इच्छित क्रम में स्लाइड को सॉर्ट करने के लिए उपयोगी है
उदाहरणस्वरूप स्लाइड नम्बर 9 और स्लाइड नम्बर 10 में बदलाव करने के लिए स्लाइड नम्बर 10 पर क्लिक करें और स्लाइड को स्लाइड नम्बर 9 के आगे ड्रैग करें
अब माउस बटन को छोड़ दें
स्लाइड्स में अदला बदली हो जाती है
नोट्स व्यू में आप नोट्स लिख सकते हैं जो कि आपको आपकी प्रस्तुति के समय मदद करेंगे
नोट्स व्यू पर जाने के लिए व्यू और फिर नोट्स पेज पर क्लिक करें
आप नोट्स tabनोट्स टैब पर भी क्लिक कर सकते हैं
स्लाइड्स पैन से डेवलपमेंट यूपी टो प्रेजेंट स्लाइड चुनें
नोट्स भाग में कुछ टेक्स्ट टाइप करें
जब आपकी स्लाइड्स प्रोजेक्टर पर दिखाई देती हैं
आप अभी भी अपने मॉनिटर पर अपने नोट्स देखने के लिए सक्षम होंगे लेकिन आपके श्रोतागण नहीं
अब नॉर्मल टैब पर क्लिक करते हैं
हम राइट में टास्क पैन लेआउट सेक्शन में प्रस्तुति का लेआउट बदल सकते हैं
टास्क पैन को दिखाने और छिपाने के लिए
व्यू और टास्क्स पाने पर क्लिक करें
यह या तो टास्क्स पैन को दिखायेगा या छिपायेगा
चलिए स्लाइड के लेआउट को बदलने के लिए लेआउट सेक्शन का उपयोग करते हैं
डेवलपमेंट यूपी टो प्रेजेंट नामक स्लाइड को चुनें
लेआउट सेक्शन से कंटेंट ओवर कंटेंट टाइटल को चुनें
यह स्लाइड के लेआउट को बदलता है
अब हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने सीखा व्यू ऑप्शन्स और उनके उपयोग और मास्टर पेजेस
इस व्यापक नियत कार्य को करने की कोशिश करें
एक नई प्रस्तुति बनाएँ
डार्क ब्लू बैकग्राउंड और लाइट ब्लू टाइटल क्षेत्र के साथ एक मास्टर बनाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद